आ यखम मंदिर छन बणाया काफी मंदिर का भैर बिटिन जु छा धारा जान्दन ऊबु छन युंका बणाया पिछाड़ी बिटिन एक बाल्टी छे रखीं अर एक भैर छ उ पाणी छ गाड़नी पिछाड़ी बिटिन एक कूड़ु छ दिखेणु जु गुलाबी रंग कु --

जू यु छन नेट पर छन चलणा यु जु रस्सी कूद छन ये रस्सी पर आना कानी छन कना।

ये तस्वीर छा कैकी नाईं की दुकान की भैर की छा जै पर एक पोस्टर छ लगायुं रॉयल बार्बर । निशाण बिटिन एक और चु ड्रम का ये पोस्टर छ लगायुं रॉयल कर।

छा काफी सूंदर मंदिर छ मैं ये पर दिखेणु जु एक जगह पर स्थित उत्तराखंड की केकी प्रसिद्ध जगह में स्थित छा।

यु छा फिर एक बार फिरसे ऐगे एक तस्वीर यु जू मंदिर छा काफी सुन्दर छ लगणु यु कूड़ु जु छा अलग ही टेक्निक से यूँकु बणायु।

ये का भैर बिटिन ढोल भी छ टांग्यू अर ये जु काफी पुराणु मंदिर छा अर ये कु म-जो-म ईंटों की पुराणी ईंट ओंदी वों-वै कु बण्यु छा पिछाड़ी जु छा बुग्याल कर छन।

यु जू काफी सुंदर मंदिर छा यु भी भौत ही प्रसिद्ध मंदिर का अभी मैं नौ नी छई येकू याद औणू पर काफी सुन्दर भोलेबाबा कु मंदिर छा।

यो भी खाली छ ह्वोई येका पिछाड़ी बटिन लक्ष्मी माता जी की पोस्टर छा य केलेंडर छा लगायूँ यूको अर बल्लभ भी छे ये पर एक लगायुं चमणौना थे।

अ पिछाड़ी बिटिन एक टावर भी छ बोहत ही बड़ु लग्यूँ और यू का जु ई दरवाजक छा वो छा सुख्यूं डालू अर येका भैर आदमी भी छा खड़ु ह --

यो जो छा एक और बार फिरसे ये कुडु हुयेगी जेकु डिज़ाइन काफी सुन्दर च लगणु।

अन डुंगो छु बणायु अ बिच बिचम कखि कखि लाखड़ो कु प्रयोग छ होयुं अर यू काफी सुंदर कुड़ु छु यू बणायु ती मंजिलू अर यू छा पठाली भी ये पर इस्तेमाल छन होईं।

ये का द्वार जू छन काफी पुराना लाखड़ा का छन और यू जू पिछलू जू हिस्सू छ वू भी काफी सुंदर छ यू कू बणायुं और जू तीसरू मंजिल छा वे पर छु पठाली छन लगायीं।